ये एक बहुत ही बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में एक बड़ा नाव रखा है जो की उससे बोहोत लोग मछली मारते हैं बहुत ही बड़ा-बड़ा मछली निकलता है समुद्र मे।